ये रंग बिरंगे पुतले कितने अच्छे लग रहे हैं बैठो हुए ये गिटार वाला पुतला कितना अच्छा लग रहा है बैठ --

इसे सजाया कितना अच्छा जो ऊपर लाल लाल लाइट है वो कितनी प्यारी लग रही है।

ये भी देखने में इतना प्यारा लग रहा है केकते खाने में कितना टेस्टी स्वादिष्ट लगे।

हरी मिर्चा यार ये हरी मिर्च बहुत बढ़िया रहती है यार इससे हम हरी मिर्च से अचार भी बनाते हैं।

ये तो मशीन है यार ये तो भाई जिम है यार ये तो बढ़िया जिम है यार ये तो कितना अच्छा जिम लग रहा है यार।

और ये गेंदे के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं गजरे में --

यार ये आदमी खड़े हैं यार ये काम करवा रहे हैं अपना यार।

यार ये कृष्ण भगवान और राधा की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है यार।